कुर्सी या एक चेयर कह सकते हैं वो दिखाई दे रहा हैं और पीछे गांधीजी कि एक फोटो भी लगी हैं ये कोई सरकारी ऑफिस हो सकती हैं।

जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान हार्ट --

और उसके सामने कुछ गाड़ी और कुछ बाइक्स पार्क कर रखी है ये एक बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है।

एक गुलाब का फूल भी नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कोई गुलाब की रेड़ी हो या कोई गुलाब की दुकान हो--

सामने दो घरे दिखाई दे रही है और काफी भीड़ भाड़ लग रही है और पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है सफेद कलर --

सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है व बिल्डिंग के अंदर दुकाने दिखाई दे रही है कुछ बैनर दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो दीवारे नजर आ रही है दीवारों के पीछे काफी पेड़ नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी --

काफी टेबल और कुर्सियां पड़ी हैं ऐसा लग रहा है कि ये किसी लाइब्रेरी जैसा लग रहा है।

यह एक हार्डवेयर की दुकान लग रही है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में हार्डवेयर के समान दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी प्रोग्राम की लग रही है जिसमें काफी ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे है और कुछ --